मत पूछिए बहोत भयानक है बहोत सुंदर है देखने में बहोत --

यहां देखिए नाव है पानी वाला नाव चल रहा है ये नाव में देखिए कितना सारा भीड़ लगा हुआ है कितना मस्त लग रहा है देखने में कितना सुंदर लग रहा है।

आप लोग भी देखने के लिए कहिये की बहुत अच्छा चीज है और यहाँ देखिये बहुत सारा जाली वाला नाव है जो हर एक रंग के आदमी आ रहें हैं जा रहें हैं।

ये माई गॉड देख कितना भीड़ लगा हुआ है कितना सारा बच्चा देख रहे हैं इतना सुंदर लग रहा है कितना मस्त लग रहा है।

यह रोड नहीं है समझिए कि यह स्वर्ग है ये इतना जंगल-झाड़ है कि मत पूछिए ये जंगल-झाड़ में इतना सुंदर रोड बना है।

ये जाके कितना सुंदर मस्त काम कर रहे है कितना मस्त काम कर रहे है ये काम अच्छा कर रहे है देखिए की इनका पैर दबा रहे है मोच खत्म कर रहे है इनका पैर पता नहीं चोट लग गया है मोच आ गया है।

लेकिन कितना आराम से ये मोच का सही कर रहे है समझ में --

कैसा लग रहा है देखने में कितना सुन्दर लग रहा है ये मत पूछिए लेकिन देखिये कितना अच्छा --

और बहुत अच्छा खुशबू है खाना का अरे यार हमको भी देगा तो दो ना यार हम भी खाएंगे यहां पर बहुत अच्छा लग रहा है देखने में ही तो खाने में कितना मजा आएगा।

इतना सुंदर लग रहा है मत पूछीए बहोत भयंकर लग रहा है देखने में।

और मछली भी बहोत अच्छा चीज है।

इतना देखिए भीड़-भाड़ है औरतों का काफी भीड़ है यहां पे गेस्ट्स भी लगे हैं बूढ़े-बूढ़े अंकल लोग लगे हैं।

आप भी देख सकते हैं कितना मस्त हैं वो बहोत सुंदर है बहोत मन कर रहा है देखने का बहोत अच्छा --

ए देखिए एक पूजा करने के लिए --

बहुत अच्छा लग रहा है दोनों फूल के मालाएं पहनाए हुए हैं बहुत अच्छा मालाएं पहनाए हैं और बहुत बढ़िया --

कितना सुंदर लग रहे हैं की बहुत बढ़िया लग रहे हैं मत पूछिए बहुत सुंदर लग रहे हैं देखिए।